मैच का ग्रीन कलर का ग्राउंड है साइड में स्टेडियम बना है पत्थरा लगा है ऊपर ब्लैक कलर का।

उसमें लाइट है ग्रीन येलो स्काई ब्लू कलर साइड में बाइक खड़ी है उसपे हेलमेट है।

झाड़ है लाइटिंग है येलो कलर की एक व्हाइट कलर की--

ब्राउन करके जमीन है। वाइट कलर के स्टैंड है। उसमें पॉट्स है ग्रीन कलर के झाड़ है।